ये सामने कमरे का कॉर्नर है जिसके जहां पर एक वायर को लटकाया गया है दीवार के साथ और यहां पर दीवार पर पेंटिंग भी लगी हुई है और--

यह एक मैकेनिक की दुकान है दुकान आ का समान है जिसमें बहुत ज्यादा जिसमें बहुत ज्यादा औजार एक टोकरी में पड़े हुए साथ में आयल वगैरा ।

और यहां पर औजार कैची वगैरा यहां पर हर चीज में सामने एक आदमी।

ग्रीन कलर के शीट के साथ छाव की जाती है ताकि--

बाग भी है जिसमें बहुत छोटी छोटी घास वगैरा जिसमें बेंचेस वगैरा भी पड़े हुए है और।

और यहां पर बहुत ज्यादा लाइटिंग वगैरा की है और वास वगैरा पड़े हुए है।

ये सामने के चेयर पर टीचर बैठे हैं और इनके पास-पास बहुत ज्यादा लड़कियां और छोटे बड़ी औरतें और लड़कियां --

के सामने बहुत ज्यादा भीड़ है जहां पर बहुत ज्यादा --

ये यहां पर इन्होंने बहोत ज्यादा रश वगैरा डाला हुआ है सब लोग खड़े हैं और को ऊं कुछ लोगों ने साड़ियां पहनी हुई कुछ लोगों ने --

और साथ में इसके बच्चे ने उधर वाली साइड पर मुंह करके खड़ा है और यहां पर बहुत ज्यादा लोग है यहां पर जिनमें।

रंग बिरंगे के कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल खुले हैं और उसने एक बालों पर एक क्लिप लगाया और उसने कानों में झुमके पहने हैं और यहां पर--

ये दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जैसे जिसका नंबर वन वन ज़ीरो ज़ीरो नाइन टू है और यहां इंडिया --

ये एक बेकरी है जहां पर केक जहां पर केक और केक वगैरा बनते है सामने।

यह एक कॉलेज है जहां जिसके ऊपर कलर का पेंट किया हुआ है यहां पर सीढ़ियां वगैरा से ऊपर सामने।

जिम विम का सामान पड़ा हुआ है यहां पर वेट वेट की प्लेट्स और और बहुत।

सर के ऊपर शॉपर एक शॉपर पहना हुआ है और ये पानी के अंदर से गुजर रहा है और बस के सामने एक कार भी।

काफी ज्यादा लोगों ने अपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ी हुई है।

ये एक जंगल है जिसमें बहुत ज्यादा अदरक --

सामने किसी ऑफिस का मेन गेट है जो शीशे जिसके ऊपर शीशे का दरवाजा लगा और साइड पे ब्राउन कलर की लकड़ी है और यह --